और ये हमें राखी की शॉप लग रही है आप खुद देख सकते हैं काफी प्यारी प्यारी राखियां यहां हैं और एक भैया खड़े हैं उस ओर मुंह करके।

लड़के यहां पे बैठे हैं जिनको सेविंग कटिंग करवानी है और एक लड़का तो सेविंग कटिंग करवा रहा है और एक बाहर खड़े हैं जिनका चेहरा में नजर नहीं आ रहा --

व आप देख सकते हैं दो लड़के काम कर रहे हैं और यहां पे एक हैं जो सर्व कर रहे हैं कॉफी आप खुद देख सकते हैं बहुत ही प्यारी जगह है लाइटिंग वगैरह बहुत प्यारी है।

यहां आप देख सकते हैं गार्डन है गार्डन बहोत ही प्यारा है बहोत ही बड़ा है और कुछ बच्चे हमें यहां पे --

खेलने को देखे जा रहे हैं और यहां पे ये लोग देख लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं आपस में मिल के --

डॉक्टर यहां पे ट्रीटमेंट करते है बट यहां पे डॉक्टर नहीं है उनका कुछ सामान रखा है जैसे की चेयर और बाकी जो समान होते है वो यहां पे पड़े --

यहां हमे एक सिंपल सिंगल खाट दिखाई दे रही है उसके ऊपर एक बिस्तर है दो तकिये दो कंबल है और कोने में आप देख सकते एक ठेला पड़ा है।

छोटा सा रूम है बहुत और साथ में इसमें खिड़की भी दे रखी है।

इसमें जो भगवान जी की मूर्ति स्थापित है ना उस पे आप देख सकते हो उनका चेहरा हमें नहीं दिखाया जा रहा है।

यहां आप देख सकते हैं हमें एक बाजार दिखाई दे रहा है इस बाजार में आप देख सकते हैं कि यहां पे बहुत सारा सामान हमें देखने को मिल रहा है और यहां पे देख लीजिए --

यहां आप देख सकते हैं हम एक बहोत ही प्यारी बहोत सुंदर नाव दिखाई दे रही आप खुद देख लीजिए नाव को कितना अच्छा डेकोरेट किया गया जो की पानी में खड़ी है।

कूलर भी यहां पे है काफी अच्छी फैसिलिटी इस रूम में और यहां पर हम देख रहे हैं की छोटी-छोटी खाट के ऊपर इन्होंने बढ़िया बेडशीट बिछा र --

और लाइटिंग इसकी आप देख सकते काफी प्यारी है पेड़-पौधे भी सामने --

और यहां पे आप देख हैं यहां पे एक लड़का है जो भगवान जी की पूजा कर रहा है और उसके पास ही छोटा सा गार्डन टाइप बना हुआ है जिसमें काफी सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं।

और यहां लाइन काफी बड़ी सारी है और हमें आसपास यहां पे बस देखने को मिल रही है और यहां पे एक अंकल खड़े हैं जो की इस साइड आ रहे हैं।

यहां आप देख सकते हैं हमे का काफी सारी यहां पे फोटोस दिखाई दे रही है।

बट इनमें से कई जनों के चेहरे हमें नहीं दिख रहे आप खुद देख सकते हैं बहोत प्यारी प्यारी फोटोस है।